वाइट बादल दिखाई दे रहे हैं ।

सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं ।

यह एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है। खिड़की दिखाई दे रही। पेड़ दिखाई दे रहे। खुला आसमान दिखाई दे रहे है।